उसके बगल में जेरॉक्स मशीन भी रखा हुआ है।

इस चित्र में मुझे ये पूरा जंगल दिखाई दे रहा है और इस जंगल में बहुत सारे पेड़ भी है जो इसमें झाड़ पौधे भी है।

पैकेट में हाथ रखा हुआ है जूता भी पहना हुआ है उधर झरना ये सब दिया हुआ है।

इधर बगल में गुपचुप का ठेला भी लगाया हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है उधर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं।

वहा पे पूरा तार से कनेक्शन भी किया हुआ है।

स्टेज बना हुआ है पीछे मे दरी भी बिछाया हुआ है।

इस ग्राउंड में पूरा लाइट लगा हुआ है और यहां पे पूरा छोटा छोटा घास भी है और यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर रात का टाइम है और बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई दे रही है।

और ये जो स्टेज है पूरा सजाया हुआ है फूल से और फिर केला के पत्ता से भी सजाया हुआ है।

ये कोई जगह का चित्र है जहां पर पूरा टाइल्स लगा हुआ है और लाइट भी लगा हुआ है पंखा भी लगा हुआ है।

के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है।

बड़ी बड़ी है छोटी छोटी सब तरह की तस्वीर है।

और यहां बीच में लाइट भी लगाया हुआ है और ऊपर से पूरा पटरा भी दिया हुआ है।

और बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है और इधर कुछ स्कूटी और बाइक भी खड़े हैं।

बाहर पूरा चेयर लगा हुआ है लाल चेय--

ये चित्र पूरा पहाड़ी इलाका का है वहां बड़ी पहाड़ दिखाई दे रही है।

मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इधर बहोत सुंदर सुंदर फूल भी लगाया हुआ है और साइड साइड में पूरा इटा से बाउंड्री दिया हुआ है छोटा सा।

पेड़ के बीच में लड़का खड़ा है ये बच्चा है और इस बच्चे ने जुता भी पहना हुआ है।

बाहर भी कुछ समान रखा हुआ है और दीवार पे भी कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर दो रखी गई है और एक टोकरी भी रखा गया है जो कि टोकरी खाली है।

कई इमारतों को बहुत ही सुंदर तरह सजाया हुआ है लाइट भी लगाया हुआ है।